एक खाली मैदान दिख रहा है जिसमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक दुकान बनी हुई है जो की ब्लू कलर की पन्नी लगी हुई है उसपे कुछ पेड़ दिख रहे है बड़े बड़े।

दो अंकल खड़े है एक ने ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है और एक ने पिंक कलर का।

जो की एक चॉकलेटी कलर के टेबल के पर रखी हैपीछे क्रीम कलर की दीवाल दिख रही हैसाइड मे।

एक साइकिल दिख रही है जिसमे बहुत सारा समान रखा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ सिर पे एक रुमाल बंधा है।

बीच मे कुर्सी लगी है जो की चॉकलेटी कलर की है।

ये के जिम दिख रही है जिंसमे दो ट्रेडमिल रखे हुए दिख रहे है।